यहां पर टेबल और कुर्सियां लगी हुई है एक टेबल पर पानी का बोतल रखा हुआ है।

इस गार्डेन में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

इस रूम में ए_सी --

यहां पर एक कार भी दिख रहा है यह दिन के समय का तस्वीर है।

एक खिड़की पर कॉलिंन रखा हुआ है।

इस बिल्डिंग पर कोर बैंकिंग पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है।

इस कमरे में एक पंखा और एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है।

उसके बगल में होटल रयांदे लिखा हुआ है।

यहां पर एक एग्जास्ट एयर लगा हुआ है।

नहर के किनारे घास उगी हुई है।

इस तस्वीर में पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर लाइटें जल रही है।

टेबलों पर टिशू पेपर रखा हुआ है।

शोरूम के ऊपर हेरीटेज टोयोटा लिखा हुआ है।

यहां पर एक ऑटो रिक्शा और स्कूटी दिख रही है।

इस तस्वीर में मकाने दिख रही है।

काउंटर पर नकदी कैश लिखा हुआ है।